c program के पहले spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि
एक सामान्य c program कैसे लिखें
इसे कंपाइल कैसे करें
इसे निष्पादित कैसे करें how कुछ सामान्य errors और उनके समाधानों को भी समझायेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं
ubuntu operating system version 1110 और ubuntu पर gcc compiler version 461 का उपयोग कर रहा हूँ
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए
आपको ubuntu operating system और editor के बारे में जानकारी होनी चाहिए
vim और gedit कुछ editors हैं
मैं इस tutorial में gedit का उपयोग करूँगा
इस प्रकार के अन्य tutorials के लिए कृपया हमारी website पर जाएँ जो नीचे दर्शायी गई है
मैं आपको बताता how कि एक उदाहरण के माध्यम से c program कैसे लिखें
अपने keyboard पर ctrl alt और t कीज़ एक साथ दबा कर terminal window खोलें
अब text editor खोलें अतः prompt पर type करें
gedit space talk dot c space & sign
हम prompt को मुक्त करने के लिए ampersand & का उपयोग करते हैं
कृपया ध्यान दें कि सभी c files में extension dot c होगा
अब enter दबाएँ
text editor खुल गया है
अब program लिखना शुरू करें
type करें double slash // space
my first c program
यहाँ line को comment करने के लिए double slash का इस्तेमाल किया गया है
comments का उपयोग program के प्रवाह को समझने के लिए किया जाता है
यह प्रलेखन के लिए उपयोगी है
यह हमें program के बारे में जानकारी देता है
tdouble slash double slash को single line comment भी कहा जाता है
अब enter दबाएँ
type करें hash #include space opening bracket closing bracket
हमेशा brackets को पहले पूर्ण करना और फिर इसके अंदर लिखना शुरू करना एक अच्छा अभ्यास है
अब bracket के भीतर टाइप करें stdio dot h
stdio h एक header फ़ाइल header file है
जब कोई program standard input/output functions का उपयोग करता है तो इसमें यह header फ़ाइल header file अवश्य होनी चाहिए
अब enter दबाएँ
type करें int space main opening bracket closing bracket
main एक विशेष function function है
यह व्यक्त करता है कि program का एक्जीक्यूशन इस line से शुरू होता है
opening bracket और closing bracke को parenthesis कहा जाता है
main के बाद parenthesis उपयोगकर्ता को यह बताता है कि main एक function है
यहाँ int main function कोई arguments arguments नहीं लेता
यह type integer की value देता है
हम अन्य tutorial में data types data के प्रकार के बारे में सीखेंगे
अब main function के बारे में अधिक जानने के लिए slides पर जाते हैं अगली slides पर जाएँ
प्रत्येक program में एक main function होना चाहिए
एक से अधिक main function नहीं होने चाहिए
अन्यथा compiler program की शुरुआत का पता नहीं लगा पाएगा
parentheses ब्रैकेट्स की खाली जोड़ी यह प्रदर्शित करती है कि main में कोई arguments नहीं है
arguments की अवधारणा पर आने वाले tutorials में विस्तार से चर्चा करेंगे
अब अपने program पर वापस जाएँ
enter दबाएँ
opening curly bracket { type करें
opening curly bracket main function की शुरुआत को प्रदर्शित करता है
फिर closing curly bracket } type करें
closing curly bracket main function की समाप्ति को प्रदर्शित करता है
अब bracket के अन्दर enter दो बार दबाएँ
cursor को एक line ऊपर ले जाएं
indentation code को पढ़ना के लिए आसान बनाता है
यह शीघ्रता से errors का it लगाने में भी मदद करता है
अतः यहाँ तीन space space दें
और type करें printf opening bracket closing bracket
printf output को terminal पर printf करने के लिए एक standard c function है
यहाँ brackets के अन्दर double उद्धरणचिह्न के अंतर्गत
printf statement में double quotes के भीतर कुछ भी terminal पर printf हो जाएगा
टाइप करें talk to a teacher backslash n
backslash n \n नई लाइन को प्रदर्शित करता है
परिणामस्वरूप printf function के एक्जीक्यूशन के बाद cursor नई line पर चला जाता है
प्रत्येक c statement को एक semicolon ; से समाप्त होना चाहिए
इसलिए इसे इस line के अंत में type करें
semicolon एक statement terminator के रूप में कार्य करता है
अब enter दबाएँ और यहाँ तीन space दें
और type करें return space 0 और semicolon ;
यह statement integer zero देता है
इस function के उत्तर में एक integer प्राप्त होना चाहिए क्योंकि function प्रकार int है
return statement एक्जीक्यूटेबल statements की समाप्ति को प्रदर्शित करता है
हम अन्य ट्यूटोरियल में रिटर्न हुए वेल्यू के बारे में और अधिक सीखेंगे
अब file को सेव करने के लिए save button पर click करें
files को लगातार सेव करते रहना एक अच्छी आदत है
यह आपको अचानक होने वाले power कट से बचाएगा
यदि applications crash होता है तो यह उपयोगी होगा
अब program को कंपाइल करें terminal पर वापस जाएँ
type करें gcc space talk c space hyphen c space myoutput
gcc एक compiler है
talk c हमारा filename है
o myoutput से पता चलता है कि एक्जीक्यूटेबल file myoutput में जाना चाहिए
अब enter दबाएँ
हम देखते हैं कि program कंपाइल हो गया है
ls –lrt टाइप करके हम देख सकते हैं कि myoutput by जाने वाली अंतिम file है
program को निष्पादित करने के लिए type करें dot slash /myoutput और enter दबाएँ
यहाँ output talk to a teacher के रूप में प्रदर्शित होता है
जैसा मैंने पहले कहा return निष्पादित किया जाने वाला अंतिम statement है
इस प्रकार return statement के बाद कुछ भी निष्पादित नहीं किया जाएगा अब इसका प्रयास करें
अपने program पर वापस आएँ
return statement के बाद एक और printf statement शामिल करें
space दें type करें printf opening bracket closing bracket
bracket के अंदर double quotes में type करें welcome backslash n और अंत में एक semicolon type करें
अब save पर click करें
अब कंपाइल और निष्पादित करें अपने terminal पर वापस आएँ
आप up arrow की का उपयोग arrowkey पूर्व में प्रविष्ट किये गए commands को दोहरा सकते हैं
यही मैंने भी अभी किया
हम देखते हैं कि दूसरा statement welcome निष्पादित नहीं होता है
अब अपने program पर वापस आएँ
return statement के ऊपर welcome statement लिखें
save पर click करें
कंपाइल और निष्पादित करें
हम देखते हैं कि दूसरा printf statement welcome भी निष्पादित किया गया है
अब उन सामान्य errors को देखते हैं जो हमारे समक्ष आ सकती हैं अपने program पर वापस आएँ
मान लें यहाँ मैं stdio h में dot भूल जाता हूँ सेव पर click करें
कंपाइल और निष्पादित करें
हम देखते हैं कि हमारी talk c fatal में line संख्या 2 में एक fatal error है
compiler stdioh name वाली header file का पता नहीं लगा सकता इसलिए यह एक error प्रदर्शित कर रहा है no such file or directory
और compilation समाप्त हो जाता है
अब error को fix करें program पर वापस आएँ dot को पुनः प्रविष्ट करें और save पर click करें
कंपाइल और निष्पादित करें हाँ यह कार्य कर रहा है
मैं आपको एक अन्य सामान्य error दिखाऊंगा
program पर वापस जाएँ
अब मान लें यहाँ मैं line के अंत में semicolon को भूल जाता हूँ
save पर click करें कंपाइल और निष्पादित करें
हम देखते हैं कि हमारी talk c file में line संख्या 6 में एक error है यह है expected semicolon before printf
अपने program पर वापस आएँ
जैसा कि मैंने पहले कहा कि semicolon statement terminator के रूप में कार्य करता है
अतः यह line 5 के अंत में और line 6 की शुरुआत में इसे खोजेगा
यह line 6 है
यह अंतिम स्थान है जहाँ आप semicolon लगा सकते हैं
याद करें कि compiler line 6 पर भी error message देता है
देखते हैं कि क्या होता है यदि हम यहाँ semicolon लगाते हैं
save पर click करें
कंपाइल और निष्पादित करें
हाँ यह कार्य कर रहा है
अब अपने program पर वापस आएँ यहाँ इस line के अंत में semicolon type करें
चूँकि line के अंत में semicolon type करना एक निर्धारित प्रक्रिया है
अब save पर click करें
कंपाइल और निष्पादित करें हाँ यह कार्य कर रहा है
अब अपनी slides पर वापस जाएँ
एक नियतकार्य के रूप में
welcome to the world of c print करने के लिए एक program लिखें
देखें see होता है यदि printf statement में \n शामिल नहीं है
यह हमें इस tutorial की समाप्ति पर लाता है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
यदि आपके पास अच्छी bandwidth नहीं है तो आप इसे download करके भी देख सकते हैं
spoken tutorial project team
spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाओं का आयोजन करती है
उन्हें प्रमाणपत्र भी देते हैं जो online test pass करते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
इस mission पर अधिक जानकारी नीचे दिए गए link पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी मुंबई की ओर से मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद